जिसके ऊपर वे बैठे हैं उसपे एक पंखा चल रहा है।

है पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं।

है उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका रंग--

ए_आर_के बुकमार्क --

है और उसके पीछे एक भैंस बैठी हुई है।

और सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है जिसका रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

बुकमार्क

जो सफेद रंग की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

और सामने एक बहुत बड़ी--

और सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है।